ये काफी सुंदर काफी मजेदार दिख रहा है इस घर ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल है।

ये पत्ता गोभी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं इससे शरीर को बेनिफिट मिलते हैं।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ड्राइंग कर रहै हैं ये अपने पेपर से यार्ट बना रहै हैं।

यह एक ट्रेन की पटरी है जिस पर ट्रेन चलते है और किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह--

एक तालाब एक ठो तलाब जैसा कुछ है हम लोग को --

और यह पानी को निकाल के फिर दूसरा पानी --

जो चिरईया खाना से मेरे ख्याल से फोटो इसका खींचा गया है जो काफी भयानक दिख रहा है।

यहाँ एक स्कूल घर है जो की बहुत ही बड़ा सा स्कूल है शासकीय नवीन महाविद्यालय है इस स्कूल का नाम --

इस बैंक के माध्यम से लोगों को काफी मदद मिलती है।

इस बैंक से बहुत सारे लोग आकर के पैसे उठाते हैं और जमा करते हैं।

यह एक गार्डन है जो की बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है।

यह एक गार्डन है जो काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है गार्डन यह गार्डन --

मे बहुत सारे बच्चे आते होंगे परिवार आते होंगे खेलते कुत्ते होंगे मस्ती करते होंगे मनोरंजन करते होंगे।

इस मेले में काफी अच्छे से सजावट की गई है इसकी पंडाल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है।

और एक को बोल रहै है की मुझे बाहर निकालो यह दोनों आदमी--

काफी जादा साकरे स्थान पर है जिससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है होती होगी बाहर निकलने में--

एक बड़ा -सा स्तंभ है जो एक जंगल के बीचो-बीच लगाया गया हैं।

ये एक बहुत बड़ा-सा भवन है जो बहुत ही बड़ा है ये भवन--

इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे इस भवन की खासियत इस स्कूल की खासियत --

यह है की यह तो पाला है और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और इसकी चौड़ाई भी--

यह पलंग बहुत मजबूत लकड़ी से बनता है।